और ये रात का समय है| और उधर पैक किए हुए राखी भी दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की अभी इसको पेंट नहीं किया गया है और इधर हरियाली भी है।

जंगल साइड लग रहा है। कच इधर कचरा भी बहोत है और ऊपर से नीला आसमान दिखाई दे रहा है एक स्काई ब्लू घर है एक व्हाइट और एक बना है बट पेंट ---

यहाँ पे दो दुकाने हैं जो कि एक खुली हुई है वहां पे बहुत सारे चिप्स कुरकुरे लगे हुए हैं। बहुत सारे सामान भी है और रोड साइड में पोस्टर भी लगे हुए हैं।

यहा पे नीचे मे बहुत सारे दुकाने दिखाई दे रही है और सेकंड फ्लोर पे एनेरेको ओ लिखा है ऊपर इंडिगो--

एक लड़का बैठा है फ़ोन पे बात कर रहा है हाथ में उसके आईफोन है कान पे लगा हुआ है।

ऑटो स्टैन्ड खड़े हुए है| दो एक आदमी खड़ा हुआ है| हले हरे कलर की दरी बिछी हुई है पूरे जमीन पे ।

एक आदमी और खड़ा हुआ है| पोस्टर लगा हुआ है मंदिर का | आई_पी_एस लिखा पोस्टर लगा हुआ है ।

और ईटों का घर बना हुआ और छोटी छोटी खिड़की दिख रही है बनी हुई ।